और यहाँ पे ऊपर में ग्रे ब्लैक कलर में आकाश दिख रहा है और पेड़ के कलर ग्रे ग्रे दिखाई दे रहें --

राइट साइड में दिख रहे है राइट साइड पे एंड बहोत सारे बहोत सारे चीजें है।

एक ऑटो है येलो कलर की एंड --

और एक सटर सा दिखाई दे रहा है।

गेट है गेट के पास--

बड़ा दिखाई दे रहे हैं मेरे को और कुछ लोग यहाॅं पे खड़े हैं बैठे हैं चल के--

प्रातः आठ से ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे तक और उस पे कुछ नंबर लिखा है।

ब्राउन ड्रेस हैं ये और बहोत सारे वहाॅं पे--

क्रीम और मैरून कलर का बहोत सारा कुछ है।

बहुत सारे पीछे में जिम के इक्विपमेंटस है और जिम के इक्विपमेंटस और कई सारे कलर के टी शर्ट पैंट पहने हुए है।

क्रीम क्रीम कलर का है ओ--

इमेज को जिसमें व्हाइट कलर का--

एंड बोर्डस बने हुए हैं एंड बहुत सारे लोग हैं यहां पे एंड --